एक हॉल दिखाई दे रहा वो हॉल मे बहुत सारी शॉप लगी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर कपड़े टेंगे हुए दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक इ स्टेज बनि हुई दिखाई दे रही है एक-एक चैर लगी हुई दिखाई दे रही है वहाँ पर कमेरा लगा हुआ दिखाई दे रहा है इ स्टेज की डेकोरेशन की गयी है।

यहा पर खेत मे धान लगी हूई दिखाई दे रही है धान मे बहुत सारा पानी है भरा हुआ दिखाई दे रहा है बीच मे दिखाई दे रही है वहा पर एक खेत मे धान लगी हुई दिखाई दे रही उस--